पीछे तरफ कुछ टूल्स रखे हुए हैं जहाँ पर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं रेड कलर में --

काफी प्राचीन मंदर लग रहा है ये व्हाइट कलर का मंदिर है ऊपर येलो कलर की पेंटिंग और मूर्तियां बनाई गई है तीन।

टुटी बिल्डिंग है मगर बहुत ही बढ़िया तरीके से पत्थर को जमाए गए हैं।

यहाँ दो लोग एडवेंचर करने आए हुए हैं।

यहां पर सामने एक टेबल पर बहुत ही प्यारे तरीके से बैलून से डेकोरेट किया हुआ है टेबल जिसके ऊपर केक रखा हुआ है।

ये एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है यहां पर काफी सारे सामान रखे गए जैसे कि --

वॉल के ऊपर कुछ बैनर्स भी लगाए गए हैं।

यहाँ पर एक डेरी शॉप है जिसका नाम बस्तर डेरी फार्म है।

इधर बहुत सारे बॉक्स बनाए गए हैं।

वेटिंग एरिया बनाया गया जहां पर ब्राउन कलर की फ्लोरिंग की गई है बिल्डिंग व्हाइट कलर की है और इधर --

यहां पर एक छोटी-सी गली --